यहां पर भी घर बन रहे हैं।

ये एक नदी है और यह नदी बहुत बड़ा है और इस नदी में बहुत पानी भी है और इस नदी में नाव चलता है।

और इस ग्राउंड में बहुत सारे घास उगे हैं।